इसके बगल में एक तंबू का टेंट भी बना हुआ है।

इसके अंदर बहुत सारे पंखे और लाइटें लगी हुई दिख रही है।

यहां पे बहुत सारे तेल के घी के बोतले भी दिख रहे हैं।

यहाँ पे बहोत सारे व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे पोस्टर भी बहोत सारे लगे हुए हैं।

ये एक गार्डन का चित्र है जहाँ पर बहुत सारे फूल के पौधे लगे हुए हैं।

यहां पे दो पंडी जी भी बैठे हुए हैं और एक पंडी जी माइक के पास बैठे हुए हैं।